और सारे व्यक्ती बैठे हुए हैं इनमें से बहुत सारे लोग मुसलमा--

सामने एक व्यक्ति कहीं जा रहा है।

वैन पर चढ़ा हुआ है और दूसरा आदमी उसे गट्टा दे रहा है और तीसरा आदमी गट्टा लेके जा रहा है।

सामने एक बहोत बड़ी सड़क है और --

और भी कई सारी दवाइयां पड़ी हुईं हैं।

और सामने गेट भी है और इस गेट का कलर येलो ग्रीन हैं।

और यहां छोटे छोटी हरी भरी घास भी लगी हुई है और छोटे-छोटे पौधे भी --

यह एक बहुत ही सुंदर जगह है।

सामने एक कपडे वाली शॉप हैं और--

और पीछे एक लेडी इस बच्ची को पकड़ कर खड़ी हुई है।

इस बोर्ड के ऊपर होटल पैलेस --

और वेलकम भी लिखा हुआ है और एक ऐरो बना हुआ--

सामने कई सारी लड़कियां बैठी हुई है और उनके हैंड में बहुत सारा सामान--